ये देखिये यहाँ पे देख रहे है ये स्विमिंग पूल के अंदर की तस्वीर है ये देखिये यहाँ पे ये जो बतख है।

जो की यहाँ पे सोनोग्राफ़ी जी का काम चल रहा है यहाँ पे ये जो एक लेडि है इनकी सोनोग्राफ़ी चल रही है साइड में यहाँ पे देखिये वगैरा--

ईसाई लोगो में भी अपना कुछ धर्म होते है अपनी बुक होती है बाइबिल होती है जो की बाइबिल इनकी मैन बुक होती है।

यहाँ पे साइड में एक शॉप है साउथ शॉप यहाँ पे जो साउथ शॉप है यहाँ साउथ डिशेस मिलती है।

जो ये ग्राउंड जो की काफी बड़ा ग्राउंड दिख रहा है यहाँ पे काफी सारे बच्चें है जो की यहाँ गेम खेल रहा है।